एक शोर्ट जींस पहने हैं.

इसमें पोठिया मछरी और सब है.

अलमारी भी है टेबल भी है.

एक हॉल है जिसमें बच्चे योगा कर रहे है।

ईसमे एक आदमी है एक बच्चा है.

ये एक दुकान है दुकान में ढेर सारा समान रखा हुआ है.

पब्लिक पार्क है पार्क में ढेर सारा पेड़ है।

कार है कार को धोया जा रहा है दो आदमी बैठे हुए हैं.

मैरेज हॉल है एक औरत भी है बाहर--